बहोत सारा घास दिखाई पड़ रहा है जो कि ग्रीन कलर का यहाँ पे एक मकान दिखाई पड़ रहा है जो कि व्हाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है उसमें बहोत सारी खिड़कियां दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पे सामने एक बिजली का खंभा दिखाई पड़ रहा है।

एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जो कि येलो कलर में दिखाई पड़ रही है यहाँ पे कांच का दरवाज़ा लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे सामने रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर सामने लाइट भी लगी दिख रही है।